जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक क्लासरूम है।

बोहोत सारी सब्जियां हरे-हरे पत्तों वाली और बोहोत सारे फ्रूट भी हैं।

जहाँ पर बहोत (बहुत) सारे मछलिया टेबुल पर रखी हुई है।

नदी में एक हंस उड़ रहा है।

यह एक दुर्गा पूजा का पंडाल है।

दूसरे किनारे पर एक पहाड़ है जो पूरी तरह से ढका हरे रंग से ढका हुआ है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं --

बहोत सारी लाइटों से सजावट की गई है।